घर के नीचे जमीन दिखाई दे रही है यहां पे कुछ साइकिलें भी दिखाई दे रहे कुछ बाइक भी दिखाई दे रही है यहां एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है जिसका कलर दीवाल का कलर सफेद है और यहां पे कुछ गेट भी दिखाई दे रहे है।

यहा पर कुछ पोस्टर भी लगे दिखाई दे रहे है।

कुछ पेन भी दिखाई दे रहे हैं निचे जमीन भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पे एल_ई_डी टी_वी भी दिखाई दे रहा है दीवार भी दिखाई दे रहा है जिसका कलर हरा है।